इसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है।

जो की एक बुक स्टॉल है।

जो स्टेज को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है।

और मार्केट पूरा खाली नजर आ रहा है।

जो की बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाए हुए हैं।

इसमें अलग-अलग भगवान की और अलग-अलग प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं।